और बाहर ली सैड एक गमला भी रखा हुआ है।

और इसमें कुछ लाइट भी लगी हुई हैं रोड पर कुछ आदमी भी खड़े हुए हैं।

कुछ ब्लैक कलर की और कुछ लाल कलर की और कुछ सफेद कलर की कारें खड़ी हुई हैं।

और मेज के पिछली साइड कुछ लकड़ी का सामान भी रखा हुआ है।

यह एक कॉलेज है। कॉलेज के अंदर कुछ लड़कियां गोल घेरे में खड़ी हैं।

यह एक जिम की दुकान है।

और इधरले साइड कुछ मिट्टी भी है।